बच्चे लोग के स्कूल में क्राफ्ट मिलता जाता है प्ले स्कूल मिलते है।

ये भी एक फाउंटेन का पिक्चर है ये मे बी कोई रेस्टोरेंट रिजॉर्ट या होटल के बाहर का अंदर का उसपे भी फाउंटेन ही है।

ये किसी क्या बोलते है तबेला को वहाँ की पिक्चर है जहाँ दो गधे है उन्हें रखा हुआ है बांध के तो नहीं है बस ऐसे ही गधा रखा हुआ है दाल लिए है सब ग्रे ग्रे दिख रहा है।

गधे की पिक्चर है जो ज्यादा तर लोग शो रखते है अपने पास देखने के लिए --